और वहाँ पे कुछ लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं इधर की तरफ टीन सेट पड़ा हुआ है और उसके नीचे भी कुछ लोग बैठे हैं।

और नीचे की तरफ बहुत सुंदर कलर हो रखा है पूरे उसमें और यहाँ सीढ़ीयें भी है।

एक मॉल हैऔर यहाँ पर बहुत सारी कॉपी किताबों की दुकान है ये यहाँ पे और प्लास्टिक का सामान भी है बैग टंगे हैं पर्स टंगे किट लगी हुई है यहाँ पे--

ये एक मंदिर हैऔर यहाँ पर बहुत सारे मूर्तियां रखी हुई हैं।

एक प्रिंटर आउट प्रिंट आउट भी रखा है टी_वी लगा है।

और अंदर की तरफ घास है और बहुत अच्छा पेड़-पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैंजा रहे हैं और यहाँ पे एक लाइट भी लगी हुई है।

यहाँ टीन रखी हुई है और एक बहुत लंबी लोहे की बेंच है।

तो इसमें बहुत सारी लड़कियां नीचे बैठी हुई हैं और ये कुछ सामने--

जो है पैसे निकाल रहा है एक आदमी और दो-तीन आदमी बाहर खड़े हुए हैं लेडीज बाहर खड़ी हैइंतजार कर रहे हैं और ऊपर की तरफ बलफ लगा हैसामने की तरफ उसमें अंदर--

किसी मार्केट की दुकान है यहाँ पे लिखा हुआ हैकैंसर आधार प्लस --

और यहाँ पर शायद कुछ दावत उवत हुई है।

बटर गिरा हुआ है और सामने घर बराबर में इसमें घर है और उसमें चैनल लगा हुआ है बहुत बड़ा इधर सीढ़ी है।

यहाँ पे गाय के बहुत सारी गाय हैं जो पल रही है।